यहाँ पर एक ठेला दिखाई दे रहा हैं जिस पर एक बोर्ड लगा वे लाल रंग का हैं बॉक्स रखा हुआ हैं बॉक्स मे कुछ गोलगप्पे दिखाई दे रहे हैं सामने के ठेले पर तवा दिखाई दे रहा हैं जिस पर और आगे देखने पर ड्रमें रखी हैं जहाँ पर उस पर गिलास रखा हुआ हैं।